जैसा कि देख पा रहे है एक मकान दिखाई दे रहा है मकान जो कि बनते हुए दिखाई दे रहा है उस मकान में लोहे लगे हुए दिखाई दे रहे-

जैसा कि देख पा रहा है एक जेरॉक्स दिखाई दे रहा है उस जेरॉक्स में एक कांच लगा हुआ गेट दिखाई दे रहा है छोटा-सा--